इस तस्वीर मे देखा जा सकता है की ये मार्केट है यहाँ पर बस और गाड़ियां ई-रिक्शा सब खड़े है और यहाँ पर एक ऊपर टायर रखा हुआ है।